और अलग-अलग तरीके डिब्बे वगैरह सब रखे हुए हैं लंबाई बहुत है लाइटिंग लगा हुआ है।

यह एक मंदिर है वो व्यक्ति खड़ा हो के पूजा कर रहा है।

यहां एक किराना की दुकान है यहां से वो अंटी जा रही है ये रोड है एक अंटी वहां पे सब्जी बेच रही है।

आंटी है पीछे साइकिल खड़ा हुआ है और बहुत सारी अलग-अलग तरीके की दुकान है।

घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहां एक स्कूल है यहां पे टीचर खड़ी हुई है।

यह एक चर्च है यहां पे झंडा रोहन किया जा रहा है बहोत सारी औरतें बहोत सारे--